एक कमरा दिखाई दे रहा है कमरे में बेड दिखाई दे रहा है ऊपर चादर दिखाई दे रहा है ऊपर तकिये भी लगे दिखाई दे रहा है यहाँ पर परदे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर लाइट भी लगी हुई दिखाई दे रही है ए_सी भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

--दिखाई दे रही ऊपर लाइट लगी दिखाई दे रही है क पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कुर्सियां डली हुए दिखाई दे रहे हैं टेबले डली हुई दिखाई दे रही है कमरे मे लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

पर एक आदमी दिखाई दे रहा है आदमी के हाथ में स्त्री दिखाई दे रही है स्त्री में ये कोट पर स्त्री करता हुआ दिखाई दे रहा उस आदमी मुँह एवं मास्क लगा के रखा है प --